काफी शानदार जगह देख सकते है आप बेस्ट लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है काफी शानदार लग रहा है बस्ट लग रहा है बहोत ही शानदार लग रहा है गुब्बारा वुब्बारा सब लगा है

जमीन दिख रहा है आसमान दिख रहा है ई और बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे है एक ठो तार खिंचाया है आउ पोल खुटा भी लगा है बहुत ही शानदार --